users in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
यह tutorial ubuntu linux os 1604
हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि इसके कारण कुछ प्रदर्शन विसंगतियां आती हैं
इस tutorial के शिक्षार्थियों के पास अपनी moodle website पर बनाए गए कुछ courses होने चाहिए
browser पर जाएँ और अपने admin username और password का उपयोग करके अपनी moodle website पर login करें
अब हम सीखेंगे कि moodle में now user कैसे बनाना है
navigation block में site administration पर और फिर users टैब पर click करें
add a new user option पर click करें
मैं adminuser2 के रूप में username प्रविष्ट करूंगी
new password field के लिए नीचे scroll करें click to enter text लिंक पर क्लिक करें
कृपया ध्यान देंpassword यहाँ दिखाए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए
मैं spokentutorial1 @के रूप में password प्रविष्ट करूंगी
force password change checkbox पर click करें
जब आप पहली बार logs इन करते हैं तो यह नए user को password बदलने के लिए कहता है
अपनी पसंद के अनुसार शेष विवरण प्रविष्ट करें जैसा कि यहां दिखाया गया है
email display में ध्यान दें कि मैंने allow everyone to see my email address चुना है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बाद में इस यूजर को admin user बनाऊँगी
लेकिन यह अन्य यूजर्स जैसे teachers और students के लिए सबसे अलग है
मैं अभी के लिए city/town field खाली छोड दूंगी हम इसे बाद में अपडेट करेंगे जब हम इस यूजर को edit करेंगे
फिर country और timezone चुनें जैसा कि यहां दिखाया गया है
शेष सभी fields default रूप से set हो जाते हैं
फिर नीचे scroll करें और create user button पर click करें
अब हमारे पास 2 users हैं system admin2 user पर click करें जिसे हमने अभी बनाया है
हम दायीं ओर स्थित edit profile link पर क्लिक करके इस यूजर profile को edit कर सकते हैं city/town टैक्स्टbox में mumbai प्रविष्ट करें
फिर नीचे scroll करें और update profile button पर click करें इसी तरह हम किसी भी यूजर के लिए कोई भी विवरण edit कर सकते हैं
इस नए यूजर के दाईं ओर 3 icons देखें उन पर जाएँ और देखें कि ये क्या करते हैं
delete icon यूजर को डिलीट करेगा
eye icon यूजर को बंद करेगा यूजर को बंद करने का मतलब होगा कि उसका account निष्क्रिय हो जाएगा
तो यूजर अब login नहीं कर पाएगा लेकिन उसका पंजीकरण grades आदि सभी बरकरार हैं
यूजर को डिलीट करने के बजाय यह एक बेहतर उपाय है
यह भविष्य के उद्देश्यों के लिए records सेव करता है और जब भी आप चाहें यूजर को वापस एक्टिव कर सकते हैं
अगला gear icon है यह हमें edit profile पेज पर ले जाएगा
ध्यान दें कि delete और suspend icons admin user के आगे नहीं दिखाए गए हैं
यह इसलिए क्योंकि main system administrator को कभी डिलीट या डिएक्टिव नहीं किया जा सकता है
add यूजर को अधिक संख्या में जोडना सीखते हैं
इसके लिए हमें किसी विशेष प्रारूप में कुछ data के साथ एक फ़ाइल upload करनी होगी स्वीकृत file type csv है
मैं userdetailsupoad csv file को खोलती हूँ जिसे मैंने पहले ही प्रदर्शन के लिए बनाया है
मैं libreoffice calc का उपयोग कर रही हूं जो libreoffice suite का spreadsheet component है
इस file में निम्न columns हैं:
यहाँ कुछ और fields हैं जो वैकल्पिक हैं:
ध्यान दें कि field titles को इस spreadsheet में लिखा जाना है यानी lowercase में
यदि हमारे पास केवल एक course है जिसमें user को नामांकित करना है हम fields title में 1 जोडेंगे
यदि आप users के लिए अधिक courses नामांकित करना चाहते हैं तो course2 role2 आदि के साथ और columns जोड़ें
कृपया ध्यान दें: आपको course1 field में course short name और role1 field में role short name प्रविष्ट करना चाहिए
छात्र के लिए role short name और शिक्षक के लिए editingteacher है
हमारे पास इस csv फाइल में 3 यूजर्स हैं
यह csv file इस tutorial के code files section में उपलब्ध है आप इसे download और उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के additional reading material में csv file के बारे में अधिक जानकारी है
अब browser window पर वापस जाएं
navigation block में site administration पर click करें
फिर users टैब पर click करें accounts section में upload users पर click करें
choose a file button पर click करें शीर्षक file pickerके साथ एक popअप window खुलता है
यदि popअप window पहले से ही उस link पर नहीं है तो बाएं menu में upload a file link पर click करें
browse/choose a file button पर click करें जो कि आपके इंटरफैश पर प्रदर्शित है csv किए गए folder browse करें और csv file चुनें
हम अन्य सभी फिल्ड को default रहने देंगे
पेज के नीचे upload this file button पर click करें
समान screen refreshes होती है जो अब text फिल्ड में लिखे गए फ़ाइल नाम के साथ the है
सबसे नीचे स्थित button अब upload users में बदल जाता है इस upload users button पर click करें
अगला पेज उन यूजर्स का पूर्वावलोकन दिखाता है जिन्हें हम अपलोड कर रहे हैं सत्यापित करें कि values सही हैं अब settings section check करें
upload type ड्रॉपडाउन में 4 options हैं
मौजूदा यूजर्स के records को अपडेट करने के लिए इन 3 options का उपयोग किया जा सकता है हम add new only skip existing users चुनेंगे
इसका अर्थ है कि यदि कोई username पहले से मौजूद है तो इसे जोड़ा नहीं जाएगा
new user password ड्रॉपडाउन में field required in file चुनें
force password change में all चुनें जब वे पहली बार login करेंगे तो यह सभी यूजर्स को password बदलने के लिए संकेत देगा
हम इस section में अन्य fields को default रहने देंगे
अब default values section को देखें
email display में allow only other course members to see my email address चुनें
आप default fields input कर सकते हैं यदि वे सभी यूजर्स के लिए समान हैं इन fields का उपयोग सभी uploaded किए गए यूजर्स के लिए किया जाएगा
मैं city/town में mumbai type करूंगी
फिर show more…पर click करें यहाँ और भी ऐसे fields हैं जिनमें हम data प्रविष्ट कर सकते हैं
लेकिन ध्यान दें कि उनमें से कोई भी अनिवार्य नहीं है इसलिए मैं इन्हें अभी के लिए खाली रहने दूंगी
पेज के नीचे upload users button पर click करें
यहां प्रदर्शित upload users results table के status column को देखें
1st यूजर के लिए status message है:
यह यूजर पहले से ही system में मौजूद है इसलिए इसे skipped किया गया था
शेष यूजर्स को new users के रूप में जोड़ा गया है
यहां प्रदर्शित status देखें
weak passwords वह है जो password नियमों का पालन नहीं करता है
हालांकि ये system में uploaded किए जाएंगे लेकिन एक अच्छे passwords का होना हमेशा बेहतर होता है
continue button पर click करें हमारे द्वारा बनाए गए सभी यूजर्स देखें
site administration पर click करें फिर users टेब पर click करें accounts section में browse list of users पर click करें
अब हमारे पास 4 यूजर्स हैं
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद